मैदान के एक छोर पर काफी सारी इमारतें दर्शायी गई हैं । वहीं मैदान के चारो ओर बड़े-बड़े पेड़ भी देखे जा सकते हैं।

इस छबि में हमें रात्रि के समय एक इंधन पंप को बाहर से दर्शाया गया है। जहाँ काफी सारे वाहन ईंधन डलवाने के लिए लगे हुए--